ये पिक्चर में एक रूम के अंदर बड़ा सा डाइनिंग टेबल है और बहुत सारे चेयर भी है।

रूम के अंदर आदमिया हैं।

दुकान के ऊपर एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी है।

सामने बहुत सारे लोग है।

सामने एक वाइट कलर की पॉट में एक प्लांट भी है।

ये बड़ा सा हाल वे है सामने में सीढ़ी है।

लाल कलर का कुर्सी है।

वॉल में फोटो हैं और बहोत सारे फैन है।

वॉल के ऊपर इंग्लिश शब्द में कुछ लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के कलर ब्लू और ग्रेवन है।

इंग्लिश शब्द में कुछ लिखा हुआ है।

पिक्चर एक कन्वीनियंस स्टोर का है।

ये एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है।

ऊपर एक पोल पर बहुत सारे सामान टंगाये हुए हैं।

दुकान के सामने एक इंसान खड़ा है।

फोटो में एक बड़ा सा ग्राउंड है।

काउंटर के ऊपर वाटर बॉटल और कंप्यूटर है।

डिश टी_वी डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ एच_डी फाइव एक्स फाइव वन ।

बहुत सारे इंसान मेले पर घूमने आए हैं।